एक गया की तस्वीर है जो होटल गर्व का लिया गया है यहाँ पर स्टे करने के लिए अच्छी फैसिलिटी हैं और स्टे कर सकते हैं बाहर से ली हुई हैं इसके आस-पास में बहुत सारी बिल्डिंग हैं दुकानें वैगरह हैं यहाँ पर।

यहाँ कोई जहानाबाद का तस्वीर है जो उम्म यहाँ पे बहुत भीड़-भाड़ है और बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं।

यह किसी जिम की तस्वीर हैं जहां पर अ अ ये अ बहुत सारे रखे हुए हैं मशीन जिम करने के लिए।